पत्थर की चट्टाने दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे फ़ुग्गो की सजावट दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ काउंटर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे--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

इस फोटो में मुझे गैरेज की दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे गिट्टी के मसाला दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे ए_सी दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे पर्दा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी ब्रेंच बेंच दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे मशीन दिखाई--